ऊपर पिले रंग की छत है और बड़े बड़े से दिए रखे गए है दीवारों का रंग जो है हरा है।

और अपने बालों को रोल रोल करके लाल रंग के क्लिप्स लगाए हुए हैं यह लड़की एक पार्लर में बैठी हुई है।

दीवारों का रंग जो है सफ़ेद है उपर ए.सी. डाला गया है और लाइटे जल रही है नीचे जमीन का रंग जो है सफ़ेद है।